जहां पे बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं बहोत सारे लोग ऊपर खड़े हुए हैं।

जहां अंदर की तरफ बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

किनारे किनारे सरियों की बाउंड्री घिरी हुई है जिसपे भी घास वगैरा लगे हुए हैं।

टेबल पे कुछ समान रखे हुए है फोन वगैरा।

इस तस्वीर में हमें गोल्डन डोर स्पा सैलून दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ नीले कलर का पत्रा रखा हुआ है।

वो बच्चियां आपस में लड़ने जा रही हैं थोड़ी दूर पर और भी सारे लोग खड़े हैं।